बिल्डिंग के आगे ब्लैक कलर का स्क्वायर बना हुआ है।

और एक व्यक्ति भी खड़े हैं रोड के पास।

और पीछे एक बाल्टी है और तीन महिले खड़े हैं और एक लड़का के हाथ में बच्चा है।

यहां उद्घाटन हो रहा है जो इसके अन्दर ढेर सारे बैलून लगे हुए हैं ।

काउंटर में लगाया गया है। एक एल_सी_डी भी लगे हुए हैं।

सबसे लास्ट में ब्लू कलर का लाइट भी लगे हुएं हैं।

आसमान भी साफ है जो एक बादल दिख रहे हैं।

नीचे बिग बाजार लिखा हुआ है।

कुछ दुकाने में कपड़ा भी रखे हुए हैं।

लाइब्रेरी में बहुत सारे अलग अलग बुक रखे हुए अलग अलग रैकों पर--

और जमीन खुदरेला खुदरेला है।

और इस सेलिंग में वाइट कलर का लाइट लगाया गया है।

और नदी के वो पार बिल्डिंग वगैरह दिख रहा है।

एक कच्चे रोड भी है जिसके बगल में एक पत्थर भी है।

एक्सरसाइज़ करवा रहे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को।

यह एक भगवान बुद्ध का मूर्ति है।

इस मूर्ति के नीचे एक युवक खड़े हैं।

और एक व्यक्ति बैठे हुए हैं।

एंड गेट के शीशे के पास एक महिला खड़ी हुई है।

यहां पानी गिरते हुए नजर आ रहे हैं।

यह एक दुकान का चित्र है।